और यहाँ पे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं आसमान बादल है यहाँ पे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बस स्टॉप पे छोटे-छोटे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे एक छोटा सा पानी का पूल दिखाई दे रहा है और एक स्टेच्यू दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पे।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहां पे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहां पे बड़ा सा एक बिल्डिंग है बहोत सारे खिड़कियां है ग्लास के--

यहां पे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है रंग बिरंगे लाइट --

छोटे छोटे चाय के कप्स दिखाई दे रहे हैं ट्रे दिखाई दे रहा है।

वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है और यहां पे लिखा हुआ है।

कार है और यहाँ पे स्टेट लाइट से ग्रील का बड़ा सा गेट है और यहाँ पे टेप पाणी का दिखाई दे रहा है यहाँ --

हरे हरे घास पौधे दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग की बिल्डिंग है बड़े बड़े पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बड़ा सा जिम है जिम के अंदर बहोत सारे बड़े बड़े--